जो बेहद खूबसूरत लग रही है।

यहां पर एक हॉस्पिटल है और बहोत सारे बैड लगे हुए हैं।

और एक आदमी मशीन के ऊपर खड़ा है।

यहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं।

चारों तरफ खुला आसमान है।

यहां पर चारों तरफ बहोत सुंदर गार्डन है।

इस फैक्ट्री में लाइट जल रहा है।

जहां बड़े बड़े टेबल कुर्सियां रखी हुई है।

उस दीवार पे अनेक प्रकार के लेंस मिरर लगे हुए है।

यहां ऊबड खाबड़ बहोत सारा सामान गिरा हुआ है।

दिए जाते हैं इसमें अनेक प्रकार की दवाइयां रखी है।

बहोत सारे अलग अलग मिठाई रखी हुई हैं।

यहां पर एक बहुत बड़ी किराने की दुकान है।

इसके आस पास बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

यहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है।

इसमें बहोत सारे कमरे हैं और बहोत सारी खिड़कियां भी लगी हुई हैं।

यहां पर एक एयरपोर्ट दिख रहा है।

हरे हरे नारियल जैसे पेड़ लगे हुए हैं।